यहाँ पे लोगो की काफी भीड़ होती है। यहाँ पे एक गार्ड भी रखे गए हैं अभी यह ए.टी.एम. बंद है।

यहाँ पे लोग कपड़े खरीदना पसंद करते है यहाँ पे लोग कपड़े खरीदते है यहाँ पे अच्छे दामो पे कपड़े दी जाती है ।

और इस सैलून में बहुत अच्छे नाई हैं जो लोगो के बाल और दाढ़ी बहुत अच्छे से काटते हैं यहाँ पे लोग फेसिअल भी होती हैं लोग यहाँ पे आते हैं फेसिअल कराते हैं ।

वो अपनी गाड़ियां इस पार्किंग जगहों पर खड़ी करके रख सकते है।